और सामने में ब्लू कलर का आ टेबुल रखा हुआ है और वाइट कलर का किराना का दुकान है और लाइटस वगेरह जल रहा है।